बगल में स्टेडियम है घर है चेयर ओवर है बाइक है।

एक जमीन है पेड़ पौधे है बहुत सारे--

तारे है पाईपे है बहुत सारे घासे है पास जमीन है।

बगल में कॉपी किताब ये सब है एक टेबल पे फोन है कॉपीज है पेन है।

एक बड़ा गार्डन है जहाँ पर आदमी लोग खड़े हैं बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जमीन है घासे है आदमी सब बैठे हुए फूल ऊल लगा हुआ है।

बगल नारियल उलियल का पेड़ है बहुत सारे आदमी वाक कर रहे हैं यहाँ पे--

एक जिम है जहाँ पे बहुत सारे आदमी बॉडी बना रहे हैं ऊपर पंखे लगे हुए हैं बगल में--

ऑटो है ऑटो के सामने दो दो तीन बिल्डिंग है ऊपर बहुत सारे ताड़े उरे हैं बगल में दुकानें हैं दुकान के सामने--

बहुत सारे बाइक ऊक जा रहे हैं यहाँ पे ऑटो उत्डू बहुत एक आदमी रोड पार कर रहा है दो तीन आदमी रोड पार कर रहे हैं।

एक पाइप का टंकी है वो पाइप है बादल बादल है एक घर दो तीन घर है।

बाहर दो तीन टेडी बियर लट के हुए हैं दुकान के बाहर पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर के बाहर दो तीन बॉल है।

बैंक के बैंक के दीवार पे दो तीन पोस्टर टंगे हुए हैं वहाँ पर दो आदमी बैठे हुए हैं चेयर पे एक आदमी पैसा निकाल रहा है वहाँ पे रोड है एक बाइक है।

बहुत सारे शूज खुले हुए हैं दो तीन बच्चे बाहर बैठे हुए हैं चेयर पे अंदर बहुत सारे लाइटिंग लाइटिंग चल रहे हैं मार्बल उल्बल का टाइम्स लगा हुआ है।

बगल में पेड़ पौधा लगा हुआ है दो पोस्टर रोड पे लगे हुए हैं दो आदमी अंदर अंदर जा रहा है एक और--

झंडा टंगा हुआ है पेड़ पौधे बहुत सारे हैं।

एक रोड है रोड पे एक आदमी साइकिल चला रहा है दो चार बाइक बगल में खड़ा है दो-तीन आदमी वहाँ पे बैठ--

कंप्यूटर है जिरॉक्स मशीन है बहोत सारे पोस्टर टंगे हुए एयरटेल का बाहर पोस्टर टंगा हुआ है।

एक बॉल है बॉल भरे हुए हैं अंदर बाथरूम के अंदर मार्बल मार्बल लगा हुआ है--

एक दुकान है जहाँ पे बहोत सारे टेडी बीयर है बहोत सारे कार्टून है ऊपर हार्ट साय हार्ट सेप का बना हुआ दिल-विल है बिग बॉल है।

बहुत बड़ा सा बहुत बड़ा बगीचा है यहां पे दो तीन चेयर हैं रखी हुई है सीढ़ियां है बगल में--

तारे हैं ताड़े हैं पोल है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं पेड़ पौधे के सामने एक बहुत सारा बहुत बड़ा गार्डन है।

और वहाँ मौसम बड़ा सुहाना है एक घर बन रहा है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एक आदमी खड़ा है वहाँ पे--

बाहर मौसम बड़ा सुहाना है सामने एक बच्चा खड़ा होकर देख रहा है तोता को--

बड़ी-बड़ी पहार है जहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा है एक रास्ता है एक बिल्डिंग है।

एक पेड़ है एक पेड़ पौधा है एक पोल के ऊपर बहुत सारे तारे लगी हुई है एक ट्रक है ट्रक के अंदर बहुत सारे गाड़ी अंदर है लोड हुआ है हो जाएगा--

एक रोड है रो रोड के सामने एक ट्रैक्टर लगा हुआ है दो बाइक है एक आदमी एक औरत है।

इंडियन आयल का पेट्रोल पंप है जहाँ पे बहुत सारे गाड़ी आती है तेल भरवाने के लिए एक रोड है--

एक डांस कर रही है जो आदमी सामने से बैठ के देख रहे हैं एक मार्बल का लगा हुआ टाइंस है बॉल भरी हुई है लाइटे है पंखे है एक लड़की साड़ी पहन के डांस कर रही है।

एक डॉक्टर है जो आद आदमी को स्कैन करके एक वीडियो में फोटो देख रहा है बहुत सारी बुक है एक स्कैनर है जेरॉक्स मशीन है चार्ज लगे हुए हैं।